ट्रेन का पटरी जना रही है स्टेशन है और एक आदमी ट्रेन ट्रेन के पटरी को पार कर रहे हैं।

यह पर यूनिवर्स सी उम्म्म --

यहाँ पर मंदिर जैसा एक घर बना हुआ है यह बहुत सुंदर है यहाँ पे गाछ वृछ लगे हुए हैं और यहाँ पर चारों पगल कुर्सियाँ लगे हुए हैं हरे-भरे है गाछ भी है बहुत सुंदर लग रहा है देखने --

नहीं है और यहाँ पर यहाँ पर लगता है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉट टाइम देट अम जो कुछ लिखा होगा --

बहुत आदमी भी है एक लड़की देख रहें हैं और बहुत सारे आदमी है और उधर गाछ है पेड़ है जिसे पेड़ कहते हैं।